यहाँ कर स्टेट बैंक के ए_टी_एम है पैसा निकलात हैं आदमी मन ए_टी_एम बैंक है ए_टी_एम बैंक है।

यहाँ पूजा पाठ क्रिसचन सिस्टर मंथन है यहा सफेद-सफेद है।